भी लगा --

ये एक जिम है। जिसमे जेन्ट्स लोग एक्सरसाइज करने आते हैं। ये एक दौड़ने वाला मशीन है।

ये एक ए.टी.एम. है। जिसमे भारतीय डाक लिखा हुआ है। यहाँ पे बहोत से बाइक लगे हुए हैं। साइकिल से भी आदमी जा रहा है। बाइक सिल्वर रंग का जा रहा है।

ये एक गाओ है। जिसके आगे गेट लगा हुआ है। जिसमे डेटा का स्वेत कलर से पेंट किया हुआ है।

एक ट्रेन वाला प्लेटफार्म है जहाँ पे ट्रेन आके रूकती है। यहाँ पे लोग ट्रेन बैठने जाते हैं।